इसमें गुड़िया बहुत अच्छा मिलता है इसमें गुड़िया बहुत अच्छा मिलता है हर तरह का गुड़िया है इसमें।

इ काफी का शॉप है ये काफी का शॉप है इसमें चाय-काफी सब मिलता है। ये --

ये अमूल का एजेंसी है। बहुत बड़ा एजेंसी है अमूल का चारों तरफ गाड़ी है ।